सबसे ज्यादा भीड़ का कारण हो जाता है की ये मेन रोड जो है वो रोड पे जो --

मस्जिद है। ये फिर क्या है ये वो तो नहीं पता चर्च मंदिल कोई मंदिर ही इ दिखने से लग रहा है। क्योकि मंदिल पे के ऊपर जो है एक तिरंगा सब फेहर रहा तो ये एक मंदिल है और अंग्रेज के ज़माने में मंदिल जो है बहुत ही इ बड़े मंदिल का निर्माण किया गया ये बहुत ही विशाल मंदिल है। यहाँ लोग जो --